देखन त कहुक फोटो ए नइ आवत हे जल्द जल्दी आवे इथर का की मूर्ति हे सोना कलर को दिसत आहे ओर चर आदमी मन पूजा करथे की कन --

इ झन हर प्रकार कर दवाई मन भेटाय ल ह सरदी खांसी मन करहु --]

एक जन कर सेट का है उ कर उ कर ढेर जन का कॉपी अर पुस्तक पेन कॉपी दिशत हे|

के चड़े बस कर ऊपरे हुन चढ़ोथन आधा मनएक ठन ठेर बगैर आदमी मन दिशत हे निकला ते भायर जी हे का पूरा घर बस के पीछे दिशत घर दिशत हे एक ठन गच दिशत हे सब--

कोन कोन नदी समुद्र में पूजा करेक दे हवे एक ठिन पुल दिशत हे बड़का असन--

यह प्लास्टिक के है की का कर हे तो एक ठो एक ठो खटिया में का लेटाय दी है सुताय दी है।

एक झन आदमी का करि का के नापत हे बैठ के की कहि द का घूमे का